जिसके कारण हरियाली दिख रहा है।

आसमान सफेद दिख रहा है बाहर की ओर एक--

ये एक दुकान की तस्वीर लग रही है जहाँ पर लोग खड़े हुए--

लाइट का प्रकाश आ रहा है उसके पास में एक बिल्डिंग है।

चिकना और खाली नजर आ रहा है।

ये दोनों सड़क पे खड़े हैं।

एक ने हेलमेट और हाथ में कागज ले रखा है।

जहाँ पे बहुत सारे घर नजर आ रहे हैं एक मस्जिद भी दिख रहा है।

घास नजर आ रही है।

पेड़ भी दिख रहा है।

बहुत सारी गाड़ियां सड़क पे लगी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में कई कपड़े रखे हुए हैं जो कि टांगे हुए हैं और यहाँ अधिक मात्रा में कपड़े पड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में तीन मंजिला इमारत दिख रही है।

ये सामने सड़क भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो कि व्यायाम कर रहे हैं।

पेड़ के पीछे एक बिल्डिंग भी दिख रही--

नाव पर बहुत लोग बैठे हुए--

हरा फर्स नजर आ रहा है।

दीवारों का रंग सफेद नजर आ रहा है।

उनके ठीक ऊपर एक पंखा लगा हुआ नजर--

दो-तीन व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

पोल भी दिख रहा है।

दीवार पर बड़े अक्षरों में--

खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई है।

जो कि एक टेबल के ऊपर है।

एक शीशे की बनी वस्तु के अंदर कुछ केक रखे हुए है।

रंग भी सफेद है।

सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

एक लाइट का प्रकाश भी आ रहा है।

आसमान अंधेरा नजर आ रहा है।

दीवारें दिख रही हैं नीचे का फर्श दिख रहा है।

दीवार पर कुछ चित्र बनाए हुए हैं।

सामने की दीवार पर --

ट्रक नजर आ रहा है।

इनके पीछे बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ है।

एक पोस्टर पे बड़े अक्षरों में फिट प्लैनेट लिखा हुआ है।

खड़े नजर आ रहे हैं।

बहुत सारी दिख रही है।

वस्तु नजर आ रही है।

रोड भी दिख रहा है जो कि पूरा खाली है।

आसमान सफेद दिख रहा है।

उसके सामने का टेबल लाल रंग--

सफेद और दूसरी तरफ की दीवार--

इस तस्वीर में बहुत सारे छोटे-बड़े पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

जो कि देखने में बहुत हरा भरा लग रहा है।

उन सभी लोगों ने अपना हाथ जोड़ रखा है।

और ये सभी लोग एक पैर पे ही --

कुर्सियां और टेबल नजर आ रहा है।

बेंच पर बैठे हुए हैं।

पुरुष और कुछ महिलाएं हैं।

इनके सामने एक सफेद दीवार नजर आ रही है।

मैदान पूरा हरा-भरा नजर आ रहा है।

घास उगी हुई है।

यह तस्वीर एक कमरे की है।

है और दूसरी खिड़की खुली है।